यहाँ पर एक मैदान है मैदान में हरी-भरी दूब दिखाई दे रही है और इसमें कुछ बकरियाँ हैं जो कुछ बैठी हैं कुछ खड़ी हैं ब्लैक येलो कलर की बकरी दिख रही हैं।

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा-सा गेट बना हुआ है| और उस गेट के अंदर स्कूल की बड़ी-सी बिल्डिंग दिख रही है।

गेट के उपर् लिखा हुआ है| एक स्कूल है और इसके सामने जो सड़क है जिसपे हरी दूबा है साइड मे पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस बिल्डिंग में वाइट कलर का पेंट किया गया है।

यहाँ पर एक हॉल में बिल्डिंग के किनारे पर एक हॉल है। इस हॉल में कुछ एक स्टेज टाइप की दिख रही है।

यहाँ पर देख रहे है के एक पार्क बना हुआ है इस पार्क मे एक येलो कलर का परवश दिखाई दे रहा है निचे इसमे--

यहाँ पर हम देख पा रहे है कि एक हॉल है हॉल में पॉट फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे है।